और यहाँ पर बहोत सारी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर एक कुत्ता भी खड़ा हुआ है।

ब्लैक कलर से रेड कलर से जरकन पहनी हुई है। यहाँ पर एक महिला खड़ी हुई है।

हीरो कंपनी की गाड़ी --

और भी रूम बने हुए है। यहाँ पर जंगल है। जंगल में एक शेर बैठा हुआ है जो कि जाली के अंदर है।

एक अ लोहे की रेलिंग लगी हुई है। वाइट कलर से दिवालें पुती हुई हैं। कत्थई कलर से बाउंड्री बनी हुई है और नीले कलर से बाउंड्री बनी हुई है।

पीले कलर से रिक्शाो के पास दो व्यक्ति खड़े हुए हैं। एक रि --

यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ पर चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है। यहाँ पर लोहे की --

यहाँ पर एक नदी बनी हुई है। नदी के चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है जोकि लोहे से बनी हुई है। नदी के पास में एक मंदिर --

और एक व्यक्ति गाड़ी के पास खड़ा हुआ है और एक व्यक्ति के पास खड़ा हुआ है।

यहाँ पर खेत में एक गाय खड़ी हुई है और बकरियाँ खड़ी हुई हैं।

एक ने ब्लैक कलर की एक सेट पहनी हुई है। एक ने --

भी रखी हुई है और बॉक्स भी रखी हुई है।